गेट के ऊपर ग़ुब्बारें से सजावट की गए है। रंग बिरंगे फूल से भी सजवाट की गयी है।

इस गाड़ी के ऊपर अंग्रेजी में रॉयल एनफील्ड लिखा गया है।

यहां एक जिम दिखाई दे रहा है जिम के अंदर बहुत सारा समान रखाई दे रहा है।

गाड़ियाँ देख सकते हैं आती-जाती हुई और यहाँ पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है जो की सफेद कलर की है।

और यहाँ पर हम सूखी घाँस हरी घाँस भी दिख रही --

जिसे लग रहा है और वो लोग पेड़ बेच रहे हैं।

बहोत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं और उसमे अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे लिखा गया है।

तो हमें यहाँ पे बहोत लोग दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति जो कि मछली बेचता हुए नज़र आ रहा है।

कुछ इन लोगो की सिर के ऊपर कुछ लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

घर भी नजर आ रहा है और वहाँ पे एक नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है।